ऑटो हव इसके परदा लगल हव आदमी है दुनिया का लोकर और ई हमरा साईकल हव साईकल सब ह और आदमी ह लाइट हव।

खिरकी हो लोहा के फोटोक हो आदमी के फिर टंकी हो ऊपर में पैप हो सीढ़ी हो फिर लोहे का गेट हो खिरकी है लोहा के --

रोड हो आदमी चल रहा पेड़ पोधा ।

के फोटो का दू गो फुल का फोटो --